बहुत ही बड़ी बड़ी चट्टानें नजर आ रही है और बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे है चट्टानों का कलर जो है सफेद है और काला भी है।

ये लोग कुछ डांस करते हुए नजर रहे है यहाँ पे आदमियों ने कुछ ने ट्न्डिशनल ड्रेस पेहनी हुई है और कुछ ने ऐसे ही नॉर्मल पेहना हुआ है यहाँ पे दो महिलाए दिखाई दे रही है जो की डांस करती हुई दिखाई दे रही एक साड़ी में एक सूट में |